यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते है यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक होते है जो उन लोगो बच्चो को पढ़ाते है।

यहाँ सब गॉड फादर है जो चर्च में होते है यह लोग --